बहुत अच्छा सजाया गया है अन्दर भी में एक बच्चा जा रहा है डेकोरेशन का काम चल रहा है पीछे एक पेड़ लगा हुआ है पीछे एक टावर भी दिख रहा है देखने में बहुत हीं अच्छा है।

मंदिर के मंदिर के उपर लाइट जल रहा है | एक झंडा गाडा हुआ है अम-फिल्ड के बीचो बीच लग रहा है चारो और लाइटिंग का व्यवस्था बहुत अच्छा है | बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं |

ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है पारस बरस पारस बाबा वैद्यनाथ बाला जी हवाई तुफान बहुत सारे बस लगे हुए हैं सभी चीज बस का सुविधा अब सब जगह कर दिया जो एक जगह से दूसरी जगह लोग आसानी से जा --

यह एक झोपर पट्टी है गावं का है।

यहाँ बहुत सारे लोग आये हुए हैं व्हाइट कलर से बहुत ही अच्छा कलर किया गया है रंगा गया है पीछे पेड़ पौधे भी हैं आसमान खुला हुआ है बादल एक दम साफ़ है आसमान --